और बहोत सारे लोग यहां इसके आस पास घूम रहे हैं।

और नीचे टेल्सों के ऊपर कुछ उम्म पॉलिथन के पॉलिथन चढ़ी उम्म कुछ डब्बे रखे हुए हैं जो भी किसी चीज के हैं।

यहां पर कुछ पत्थर बिछे हुए हैं और इसके आस पास बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

जिसपर लिखा है मां विद्या कंप्यूटर सेंटर जन सेवा केंद्र सी_एस_सी ।

और बढ़िया गार्डन दिखाई दे रहा है इसके बगल में बहोत सारी स्-सु खूबसूरत इमारतें भी दिखाई दे रही।

के पास ही में कुछ बैट बल्ले रखे हुए हैं और एक लोहे का पाइप भी दिखाई दे रहा है।

यहां मेरे सामने कुछ सेट्रे जमीन पर रखे हुए हैं।

और दो व्यक्ति स्कूटी से जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

और लोहे के पाइप लगे हुए हैं लोहे के पाइप पर कुछ गमले टंगे हुए हैं जो कि बेहद खुबसूरत लग रहे हैं।

इसमें बच्चों के कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं और ऊपर जे जाने के लिए जीना भी लगा हुआ है।